एक बस दिख रही है। जिसमे कान्हा जी की तस्वीर है। बस का नंबर है। बस की लाईट है। बस का चका दिख रहा है। पीछे एक टावर दिख रहा --

एक के रास्ता है। ऊपर से फ्लाईओवर है। एक कार खड़ी है जिसका रंग सफेद है। उसके पीछे में साइड लाइट लगी है लाल कलर की। रोड पे जेबरा क्रॉसिंग बना हुआ है।

लोहे की रोड लगी हुई है। लोहे की पोल लगी हुई है। बैठने की जगह है। बिल्डिंग दो मंज़िला है।

दरवाजे में पीले रंग के फूल बने हैं। हरे रंग के उसके पौधे हैं। ऊपर त्रिशूल नुमा आकार है।